जिससे बोहोत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है।

जिसको भी अपना लेना हो --

ट्रकों में भर कर आते हैं और उसमें उन्हें निकाल के और उन्हें कंपनी के लिए यूज़ करते हैं।

निम्बू गाजर लसुन प्याज आदि वगेरा मिलते हैं। केले भी टंगे हुए हैं।